यह तस्वीर में मुझे एक ए.टी.एम दिखाई दे रहा है ए.टी.एम के बाहर मुझे एक बंदा निकलते हुए दिखाई दे रहा है जोकि अपना वॉलेट लेते हुए निकल रहा हैं।

सामने देखने पर एक बंदा दिखाई दे रहा है जिसने कैप लगा के रखी है और फोटो खिचवाते हुये दिखाई दे रहा है आसमान बिल्कुल साफ- सुथरा है।

ये काफी ज्यादा इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं आसमान बहोत ही साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे रहा है।

और इसके मीनार ऊंचे दिखाई दे रहे है पीछे की ओर आसमान मे बादल दिखाई दे रहे है और यहाँ पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यह तस्वीर मे मुझे कुछ ट्रेक्टर दिखाई दे रहा हैट्रेक्टर का कलर मुझे गरे दिखाई दे रहा है पीछे की ओर देखने पर बहुत सारी मूर्तिया दिखाई दे रही है और--